यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है।

यहां पे बहोत सारे तार भी पास किए गए है।

ये एक भोजनालय ग्रहण का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी भोजन ग्रहण कर रहे हैं।

यह एक लिट्टी की दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे मटके लगाए हुए हैं जो ब्राउन कलर के हैं।

यहां पे एक रोड भी दिख रहा है।

बहुत सारे बाइक भी लगे हुए एक कुर्सी भी लगी हुई है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

लोहे के एंगल के मदद से खिड़की भी बनाई गई है।

एवं बगल में रोशन रोड लाइंस भी लिखा हुआ है।

एक बड़ा बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है जो ब्लू कलर का है।

यहां चोंगे भी लगाया गया है जो अंधेरे में है।

दीवाल भी टाइल्स द्वारा ही बनाया गया है।

शीशे की मदद से इसका दरवाजा भी बनाया गया है।

जहां पे एक स्कूटी भी लगाई गई है तथा एक बाइक भी लगाया गया है।